काफ़ी सुन्दर लगे है।

घर में कुछ लिखा हुआ है।

ये एक जिम है जिम में दो आदमी फोटो घीचा रहें हैं।